यह दो मंजिला लग रहा है यहाँ सब तार उलझा हुआ है जिंदगी के भाती-

ये समझ नहीं आ रहा है हमको की --